यह एक ऑफिस का दृश्य है यहां पे एक ब्लैक कलर का बेंच है।

दो लैपटॉप है एक रेड और एक ब्लैक कलर का।

एक ब्लैक एक ब्राउन एक ग्रीन एक लाल कलर का कालीन बाहर रखा हुआ है।

यहां पे सीमेंट और छर्री बहोत सारे हैं।

यहां पे बहोत सारे पानी है जो की आसमानी कलर की है।

यहां पे एक बेग है जो कि ब्राउन कलर की है एक बेग लाल कलर की है उसमें कंबल रखा हुआ है।

यहाँ बहोत सारे टेप और पेंसिल और पेन रखें हुए हैं।

यह एक ऑफिस का बाहर का दृश्य है।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पे एक आदमी चल रहा है व्हाइट कलर का शर्ट पहने।

यहां पे दो बोड है जो ग्रीन एंड व्हाइट कलर के हैं उसमें बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं।

लैपटॉप भी है ब्लैक कलर का।

लाल कलर का चार बाल्टी है जिसमें बालू रखे हैं दो में दो में फूल लगे हुए हैं।

पेड़ के ऊपर बहोत सारे चोगे लगे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे पानी है वो पानी आसमानी कलर के हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पे बहुत सारे मिट्टी गिरे हुए हैं और घास भी है।

यहां पे एक दस्ताना लटका हुआ है।

यह एक कार शोरूम का दृश्य है जहां पे एक वाइट कलर का कार हुआ है।

बहोत सारे जग गोल्डेन कलर के है और जग सिल्वर कलर के है।

यहा पे गैस और चूल्हा भी है और कढ़ाई भी है।

यहां पे एक वाइट कलर का बेग भी रखा हुआ है और एक पीला कलर का बोड़ा भी।

एक कैमरा भी है यहां पे एक पेन और एक लड़की बैठी हुई है जो की लाल कलर का शर्ट पहनी है।